यहाँ पर एक बड़ा- सा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें ऐक्सी बैंक लिखा हुआ है डोंगरगढ़ ब्रांच लिखा हैं।

यहाँ पर एक बड़ा-सा बैंक दिख रहा हैं एस. बी. आई. बैंक हैं सीढ़ी बना हैं बहोत सारा यहाँ पे बाइक खड़ा किया हुआ हैं एक आदमी दिख रहा हैं साइकिल खड़ा किया हैं।

कुछ लाइट वाले बोर्ड दीवाल में लगे दिखाई दे रहे हैं।

पानी पूरा यहाँ वहां से भरा हैं साइड में कुछ छोटा बड़ा पत्थर दिख रहा है साइड में बड़ा बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बड़ा सा पुल बना है और नीचे पूरा नदी का पानी बहते दिख रहा है कुछ काला काला सा यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है।